ओ साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार का स्टोर हर एक जगह पे रहना चाहिए क्योकि इसी प्रकार का जब आप स्टोर रहता है तो आदमी को सुविधा उपलब्ध होती है।

यह एक स्विंग पुल है जे इसमें बच्चो को ससारने के लिए दो-तीन प्रकार का लगाया गया है जे जिसमे एक स्विंग पुल है जो एक ससारने वाला जो है । कोई ब्लू टाइप का है कोई येलो टाइप का है । इसके आसपास बोहोत सारे पेड़- पौधे हैं । ख़ूबसूरत दृश्य लग रहा है देखने में ।

यह एक सिंपल किराना स्टोर है जिसमे बाहर में विभिन्न प्रकार का तार टाँगा गया है पार्ले-जी बिस्कुट टांगी गई है।

इसके यहाँ पे जो है कई प्रकार के फे पेड़-पौधे हैं। फुक फुकुल फूल खूबसूरत हैं। ऊपर से लोग गाड़ी को ढाका हुआ है। आगे जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी लगा हुआ है। पीछे बी. एम. डब्लू. लगाया हुआ।

इस आकृति में जो है कपड़े का दुकान है खास कर करके जेंट्स के लिए है।

इसका मतलब हुआ की शहर में जो है एक कपड़े का दुकान खुला हुआ है उचित मूल्य पे बेचता है की नहीं बेचता ग्राहक को ठगता है क्या करता है साढे चार सौ लिखा --

कोई व्हाइट नहीं है। सब एक रंग है बहुत ही खूबसूरत इसका दृश्य है इसका जो आगमन आने-जाने का ज रास्ता भी छोड़ दिया गया है।

सुनिश्चित नहीं किया गया है ढंग से नहीं लगाया गया है इसीलिए किसी भी ग्राहक को इसमें लाइन मार दे सकता है।

यह दृश्य अलग-अलग रंग है इसमें है जी पेड़ में खड़े है तो कोई पीला टाइप का है कोई उजला टाइप कोई काला का कोई ब्लैक टाइप का कोई रंगीन टाइप का कोई ब्लू टाइप का दृश्य देखने में अच्छा तो लग रहा है। लेकिन --

हवाई जहाज एरोप्लेन यानि वहीं पे खड़ी है इसका आकाश का दृश्य कितना ख़ूबसूरत देखने में दूर से लग रहा है कि मतलब मन को दिल और आकृति दोनों भा जा रहा है।

यह दृश्य कितना खुबसूरत कितना मन को भाने वाला दृश्य लग रहा है कि दोनों तरफ नदियां हैं। एक तरफ इसका इसका और इसका पेड़ से जो आकृति बना है वो कितना खुबसूरत प्रकार का लग रहा। इसमें फूल डाला हुआ है। बीच में लोग यहाँ पे अलग टाइप का बनाया हुआ है जो बीच से लोग भी पार हो सकते हैं। बीच --